यह एक मोटरसाइकिल रिपेयर दुकान और गराज का दृश्य है।

आस पास काफी सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है।

चर्च का इमारत सफेद रंग का है।

आसपास कुछ स्टेपलाइजर और अन्य मशीनें रखी हुई है।

आस पास कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

पराठे हल्के पीले तथा हल्के लाल रंग के हैं।

और सामने होटल गटवे कर्नाटका लिखा हुआ है।

इंग्लिश में भी नीचे ओपन जिम लिखा हुआ है।

आस पास कई सा सारे लोग बैठे हुए हैं।

अंदर की ओर काफी सारे सफेद तथा अन्य रंग की कारे लगी हुई है।

एक नीले रंग की बोतल भी रखी हुई है।

एक सफेद रंग का मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

फर्श स टाइल्स का बना हुआ है।

इस तस्वीर में सामने एक भगवान की काफी बड़ी मूर्ति बनाई गई है।

सैलून की इमारत थोड़ी पुरानी है।

बाहर के ओर कुछ मोटरसाइकिलें भी लगी हुई हैं।

पीछे की ओर एक ला काले रंग की मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।

विद्यालय के पास काफी सारे अलग अलग तरह के मोटर साइकिलें लगी हुई हैं।

बॉन्ड्री लकड़ी की मदद से बनी गई है।

काउंटर का मेज काले रंग का है।